लोहा का पाइप का लगा बना हुआ है और लोहे का चादर का बना हुआ जिसे खसल-खसल के लोग खेल रहे है पीछे साइड पेड़- पौधा है और हाता लगा हुआ है और --

फूल ही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा हैं ।

यहाँ ये कोई मंदिर है इस मंदिर बहुत ही पुराना डिज़ाइन से बनाया गया है और उसमें सभी प्रकार का कलर का --

उपयोग किया गया है यहाँ जो हाता है उसके ऊपरी हिस्से में गणपति जी का --

यहाँ कुनकुरी का चर्च है जैसे लग रहा है यहाँ पक्का का बना हुआ चर्च हैं ।

यह कोई मंदिर है जैसे लग रहा है मंदिर का ऊपरी हिस्सा का कोई फोटो खींचा है और यह मंदिर में एक मूर्ति है यह मूर्ति हाथ फैलाए हुए --

यहाँ अल्वेसटर का बना हुआ --

यह बहुत बड़ा का डेम है और यहाँ डेम मैनपाट तरफ है जैसे लग रहा है को मरता डेम जो है ऐसा है लग रहा है और डेम के --